जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर बहुत सारे घर है और बहुत सारी गाड़ियां हैं।

और बहुत सारे जिम के सामान भी रखे हुए हैं।

बम्बुआ लगे हुए है और कुछ वायरे भी है यहां पर एल_एस लिखा हुआ है।

कुछ दरख्त भी है लाइट के खंबे भी लगे हुए हैं।

और एक कार है काले कलर की एक बाइक है।

और यहाँ पर एक पानी के गिलासा भी है।

यहां पर एक सोसायटी है।

गाड़ी भी है और यहां पर डरप्ट भी है और कुछ घर बन रहे हैं।

और कुछ पुतले और ये लगे हुए हैं।

और यहां पर एक बड़ा सा माता का मंदिर है जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर बहुत बहुत सारे लोग है।

पर एक चप्पलों की दुकान है और यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर नंबर भी है।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग है।

कुछ लोग भी है और बहुत सारी गाड़ियां भी है।

यहां पर एक स्टेज है जिस पर एक पोस्टर लगा हुआ है और यहां पर दो लोग बैठे हुए हैं और एक बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ है।

यहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन है जिसके अंदर दो औरतें बैठी हुई है।

और यहाँ पर कुछ दरख्त भी है और एक झूला भी है।

यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।